पौधे भी है यहाँ पे घास भी बहोत ज्यादा हरे-हरे हैं यहाँ पे जो पेड़ है वह काफी ही --

दो तीन छाता भी रखा हुआ है उसके बाहर में एक बाइक भी--

ये स्प्राइट है माजा है कोकोकोला है।

यह बुक की दुकान है इस बुक दुकान का नाम है कृष्णा बुक एजेंसी ।

और इसके अंदर में एक आदमी अपने पैसे निकाल रहे हैं तो कुछ बाहर में खड़े हैं तो--

यहां एक वन संसाधन केंद्र है और यह कठियाड में है इसके आस पास बहोत सारे छोटे बड़े--

अंदर से इसका डिजाइन भी बना हुआ--